बच्चे भी दिखाई दे रहा है और कॉपी भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है।

और रास्ता भी दिखाई दे रहा है और लाठी भी दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक गाड़ी दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक खेत दिखाई दे रहा है।

और उसका सारी ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।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

और दरवाजा में वाइट कलर का भी दिखाई दे रहा है।

और ब्लू कलर का टिना भी दिखाई दे रहा है।